यदि आप पह्प की सुरक्षा के बारे में चिन्तित हैं तो यह टयूटोरियल आपको मद5 फंक्शन के बारे में बताएगा
यह एक पूर्व परिभाषित फंक्शन है जो स्ट्रिंग को एक मद5 हैश में बदलता है और आपको आपका डेटा सुरक्षित करने की अनुमति देता है
मद5 हैश एक प्रकार के आवर्तन का इस्तेमाल करता है जिससे कि यह विकोड नहीं किया जा सकता इसको केवल एन्क्रिप्ट किया जा सकता है
मद5 हैश को ढूँढने का केवल एक तरीका है कि स्ट्रिंग को भी मद5 हैश में बदल दें और इसकी तुलना एक स्ट्रिंग से करें जो कि पहले से ही हैश में बदली जा चुकी है
यदि आपको नहीं समझ आ रहा है कि मेरा मतलब क्या है तो मैं इस टयूटोरियल में यह बताऊँगा
मैं स्ट्रिंग को पूर्व निर्धारक के द्वारा शुरू करूँगा यह मेरा पासवर्ड बनने जा रहा है
मैं इसे यूजर पासवर्ड बोलूँगा और इसकी वेल्यू एबीसी होगी
फिर मैं यूजर पासवर्ड ईएनसी नामक एक नया वेरिएबल बनाऊँगा जिसका मतलब है एन्क्रिप्शन और मैं मेरे मद5 फंक्शन्स परिभाषित करूँगा जोकि मूलतः एम डी और 5 है
इसके अंदर कुछ भी हो सकता है अतः आप कुछ भी दे सकते हैं जिसे आप यहाँ एन्क्रिप्ट करना चाहते हैं
किन्तु अभी के लिए मैं अपना यूजर पासवर्ड वेरिएबल एन्क्रिप्ट करूँगा जिसको हमने यहाँ ऊपर परिभाषित किया है
और यदि हम केवल इसे एको करें आप देख सकते हैं कि हमें हमारी मद5 एन्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट की वेल्यू मिलती है जोकि यह है
आप देख सकते हैं कि यह नौ सौ से शुरू होता है और मुझे लगता है कि यहाँ करीब 20 समान कैरेक्टर्स हैं
लेकिन जो कुछ भी मैं वेल्यू में भी बदलूँ यह काफी कुछ उतनी ही लम्बाई का रह रहा है
केवल एक चीज़ जो बदल रही है वह है कंटेंट अतः हमने स्ट्रिंग को एन्क्रिप्ट कर लिया है जिसके द्वारा आप जो यहाँ हैश देख रहे हैं वो एबीसी है
अब मैं यहाँ जल्दी से एक प्रोग्राम या स्क्रिप्ट बनाऊँगा जो उपयोगकर्ता से एक इनपुट लेने जा रहा है और यह जाँचेगा यदि पासवर्ड एबीसी है
अब इसको परम्परागत रूप से करने का तरीका यह है कि अपने एन्क्रिप्शन को बहार निकालें
हम यह कहने के लिए एक सरल जाँच कर सकते हैं यदि पोस्ट पासवर्ड हमारे यूजर पासवर्ड के बराबर है तो कुछ करिये अन्यथा कुछ और करिये
अतः उदाहरणस्वरुप आपके पास एक इनकरेक्ट पासवर्ड नामक एरर हो सकती है और यहाँ आप कह सकते हैं आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक यूज़र पासवर्ड से मैच हुआ है किन्तु जब हम डेटा को महत्व देते हैं जो हमारे पास या तो पोस्ट वेरिएबल्स में होते हैं या डेटा बेस में रहते हैं
यह वेल्यू हो सकता है कि डेटाबेस से सूचित की गयी हो और डेटा बेसेस दुर्भाग्य से टूट सकते हैं
अतः यदि एक डेटा बेस टूट सकता है तो आप चाहेंगे कि आपके यूज़र्स के पासवर्ड एन्क्रिप्ट हो ताकि वो ढूँढने में काफी मुश्किल हों
स्पष्ट रूप से एबीसी ब्रेक करने के लिए सरल होगा जैसे बारी आती है क्योंकि एबीसी एक कॉमन पासवर्ड है
एबीसी को मद5 हैश में बदल कर आप इसकी अपने डेटाबेस में पहले से ही संचित मद5 हैश से तुलना कर सकते हैं और यदि यह दो हैशेस बराबर होते हैं तब उन्हें पता लग जाएगा कि मद5 हैश एबीसी के बराबर है जैसा कि बस साथ में शुरू होने के लिए वह पहले से ही हैश हैं
फिर भी हम क्या करेंगे कि हम इस वेल्यू को यहाँ लेंगे हमारा यूजर पासवर्ड एन्क्रिप्टेड और हम अपने पोस्टेड पासवर्ड की तुलना अपने एन्क्रिप्टेड पासवर्ड से करेंगे
अब वास्तव में हमें क्या करने की आवश्यकता है कि यूजर पासवर्ड ईएनसी की तुलना करने में सक्षम होने की जरूरत है
यह जैसा कि एन्क्रिप्टेड के लिए है और यह पोस्टेड पासवर्ड बिना एन्क्रिप्टेड के लिए है
अतः यदि आप पोस्टेड पासवर्ड का मद5 हैश लेते हैं और उसकी तुलना संचित पासवर्ड के मद5 हैश से करते हैं हम अपने उपयोगकर्ता को पता करवा सकते हैं यदि उन्होंने सही या ठीक पासवर्ड एंटर किया है
तो मैं बोलूँगा यदि पोस्टेड पासवर्ड का मद5 हैश संचित पासवर्ड के मद5 हैश के बराबर है जोकि यहाँ है यह वेरिएबल है जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं फिर हम सही सूचना दर्शा सकते हैं या हम एक एरर सूचना दर्शा सकते हैं
और यदि ये बराबर होते हैं तब मैं कहूँगा इस स्क्रिप्ट को क्लियर करें और लिखूँगा करेक्ट अन्यथा मैं बस स्क्रिप्ट को मिटा दूँगा और लिखूँगा इनकरेक्ट
इस समय हम इनकी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि हमने कोई वेरिएबल्स नहीं डाले हैं
यहाँ नीचे मैं एक फॉर्म बनाऊँगा
मेथोड भी पोस्ट होने जा रहा है क्योंकि हम यहाँ ऊपर पोस्ट तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं
और एक्शन मेरा पेज होने जा रहा है अर्थात जिस पर अभी मद5 डॉट पह्प है
फिर मैं बस इसके दो एलिमेंट्स बनाऊँगा जोकि एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है और मैं पासवर्ड का नाम दूँगा
केवल एक ही कारण है कि मैं इसका टाइप टेक्स्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप कंटेंट देख सकें अन्यथा आप कैरेक्टर्स को खाली करने के लिए इसे पासवर्ड दे सकते हैं
अगला मेरे पास एक इनपुट बॉक्स है और यह कहता है चलिए अभी के लिए केवल लॉगिन कहते हैं क्योंकि यह एक मद5 एन्क्रिप्शन के लिए एक प्रतीकात्मक उपयोग है जोकि एक log इन स्क्रिप्ट होगी
जब मैं अपना पेज रिफ्रेश करता हूँ आप अभी इनकरेक्ट देख सकते हैं
ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपना पोस्ट वेरिएबल नहीं जाँच रहे हैं
यहाँ मैं केवल लिख सकता हूँ यदि पासवर्ड मौजूद है तब हम इस पूरे कोड को एको कर सकते हैं और हम इसको अधिक पठनीय के लिए इंडेंट कर सकते हैं
चलिए मैं इसे यहाँ वापस ले आता हूँ
ठीक है अतः यदि हमारा पासवर्ड जमा हो चुका है जिसका मतलब है यह फॉर्म इस वेल्यू के साथ जमा हो चुका है फिर हम कहते हैं क्या एन्क्रिप्टेड पासवर्ड का मद5 हैश अर्थात फॉर्म में जमा किया गया पासवर्ड जोकि यहाँ हमारा पोस्ट वेरिएबल है संचित पासवर्ड के हैश के बराबर है अतः हम यहाँ इस इफ स्टेटमेंट में एन्क्रिप्टेड डेटा के साथ काम कर रहे हैं
यदि यह बराबर होता है तो हम यह दर्शाएँगे अन्यथा हम इनकरेक्ट दर्शाएँगे
अतः चलिए इसको पुनः रिफ्रेश करते हैं
अब मेरा पासवर्ड एबीसी है अतः यदि मैं अपने पासवर्ड के रूप में एलेक्स टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें एक इनकरेक्ट एरर सूचना मिली है
यदि हम अपना पासवर्ड एबीसी टाइप करते हैं जोकि सही है आप देख सकते हैं हमें करेक्ट सूचना मिली है
केवल आपको कंटेंट की जानकारी देने के लिए मैं यह क्या कर सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ एको और मैं लिख सकता हूँ कंपेयर्ड और चलिए अपना यूजर पासवर्ड लेते हैं वास्तव में नहीं चलिए अपना एन्क्रिप्टेड पासवर्ड लेते हैं
अतः यूजर पासवर्ड ईएनसी की तुलना करने के लिए मैं केवल उसमें और पोस्टेड पासवर्ड में आगे जोड़ दूँगा
हम इन सबको एन्क्रिप्टेड चाहते हैं अतः यहाँ मैं मद5 टाइप करूँगा
इसको करने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि यहाँ ऊपर एक नया वेरिएबल बनाएँ कहिये मद5 इसको कट करिये अतः ईएनसी या सबमिटेड ईएनसी इसके बराबर होगा
फिर यहाँ हम अपने वेरिएबल्स को केवल बदल सकते हैं अतः यह इसको थोड़ा अधिक धाराप्रवाह बनाता है
यह इसके कार्य को बेहतर या कुछ कम नहीं बनाता
किन्तु यहाँ जब हम एबीसी चुनते हैं और जब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं और हमें एक एरर मिलती है
चलिए वापस आते हैं और जाँचते हैंऔर ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इनको कर्ली कोष्ठकों में रखने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ हमें दो लाइनों का कोड मिला है
चलिए वापस चलते हैं बैक पर क्लिक करिये एबीसी चुनिए और हम यहाँ इसकी यहाँ इससे तुलना कर रहे हैं
चलिए इसे यहाँ अभी ब्रेक करते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या हो रहा है
ठीक है अतः हमने यहाँ इसकी यहाँ इससे तुलना कर ली
आप देख सकते हैं कि यह बिलकुल समान मद5 हैश हैं हालाँकि यह यहाँ संचित पासवर्ड है और यह पासवर्ड है जो हमने जमा किया है
अतः आप देख सकते हैं कि हम अपने जमा एन्क्रिप्टेड से अपने संचित एन्क्रिप्टेड तक जाँच कर रहे हैं
इसके अनेक लाभ हैं आप इसे डेटाबेसेस में उपयोग कर सकते हैं जब आप एक यूज़र को डेटा बेस में दर्ज़ कर रहे हैं पासवर्ड को एनक्रिप्ट करिये फिर उसे संचय करिये
यदि आप एक पासवर्ड के लिए लॉगिन फॉर्म में जाँच कर रहे हैं तो लॉगिन फॉर्म में उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज़ पासवर्ड को एनक्रिप्ट करिये और उसको डेटा बेस के एन्क्रिप्टेड पासवर्ड से जाँचें
अतः आप देख सकते हैं कि इसके अनेक उपयोग हैं और यह वाकई में निर्धारित करने के लिए सरल है
आपको केवल यहाँ एक मद5 फंक्शन की आवश्यकता है
अभी आपको मद फंक्शन्स पर बस इतना ही जानने और इसे प्रयोग करने और इसे अपने फॉर्म्स में कैसे लागू करें यह जानने की आवश्यकता है
ठीक है देखने के लिए धन्यवाद
मेरे पास कुछ अन्य सुरक्षा ट्यूटोरियल्स हैं जो आने वाले हैं अतः उनको देखिये
अलविदा
यह स्क्रिप्ट रवि द्वारा अनुवादित है